यह एक पत्थर का कंपाउंड दिखाई दे रहा है और यहां पे पत्थर का स्टैचू दिखाई दे रहा है बड़ा सा और यहां पे ग्रिल दिखाई दे रहा है छोटे-छोटे।

ये एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है और यहां पर बहोत सारे लडके दिखाई दे रहे हैं।

बड़े-बड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

घांस के ऊपर बड़ा सा पाइप दिखाई दे रहा है पानी का और बहोत सारा पानी घासों में गिर रहा है।

यहां पे अंधेरा छाया हुआ है और यहां बहोत बड़ा मेला दिखाई दे रहा है मेले में बहोत सारे झूले दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे रेड कलर की कुर्सी दिखाई दे रही है।

यहां पर टेबल दिखाई दे रहा है और टेबल के ऊपर--

यहां पे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

बड़े छोटे लाइट्स भीं दिखाई दे रहें हैं और यहाँ फ्लोर ब्राउन रंग का दिखाई दे रहा हैं।

यहां पे टू व्हीलर और यहां बड़ा सा एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और यहां बहुत सारी भीड़ भी दिखाई दे रही है।